एक अमेरिकन टूरिस्टर का स्टीकर भी लगाया हुआ है कुछ बैग सेट में रखे हुए हैं कुछ बैग फर्श पर रखे हुए है सामने में एक फोटो फ्रेम भी लगा हुआ है।

जिसके बाहर दो आदमी खड़े हुए हैं जो की हाफ स्वेटर पहने हैं उसके बगल में एक आदमी है जो कि नीला शर्ट पहना उसके बगल में खटिया भी है।

सामने में बहुत सारे पेंट ब्रश भी लटकाए हुए हैं।

एक किताब और बगल में एक पेन भी रखा हुआ अंदर बोड़ा में कुछ सामान भी है।

और सेल्फ में बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

उसके नीचे एक पीला कलर का में कुछ लिखा हुआ है सामने में एक लाल कलर का कपड़ा भी पसारा हुआ है।

यह एक कार का दृश्य है जिसको म का बनाने के लिए एक आदमी अंदर घूंसा हुआ है।

यह एक सुविधा केंद्र कमरे का चित्र है।

जिसमें दो टेबल रखे हुए हैं जिसके ऊपर दो लैपटॉप हैं एक कीबोर्ड है एक चेयर है एक लकड़ी का चेयर है।

उसके बगल में एक पर्दा है जिसपर फूल बना हुआ है।

यह एक पार्क का दृश्य है जिसमें बहुत सारे आदमी लोग हैं।

सामने में तीन छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए हैं सामने में एक बच्चा खड़ा है और एक पैकेट भी बिगा हुआ है।

सामने में एक काला कलर का गाय हैं उसके पीछे में एक आदमी भी खड़ा है।

और बर प्रिंटर के बगल में एक हरा सा डिब्बा रखा हुआ है उसकी एक साइड में एक चित्र बना हुआ है जो आदमी का है उस--

इस चित्र में एक नया मकान बन रहा है जोकि के लेवल तक पहुंचे हैं।

उसका पिलर का बहुत सारा रॉड भी बंधा हुआ है सामने में एक आदमी खड़ा है जो कि जूता पहने हुए है ब्राउन कलर का है।

यह एक कमरे का दृश्य है जिसमें लिखा हुआ है बेस्ट कॉफी सामने में दो कप में काफी भी रखे हुए है एक पानी का बोतल भी रखा हुआ है जोकि टेबल पर है।

सामने दो कटोरे भी हैं उसमें दो स्पून भी रखे हुए हैं।